और ऊपर में एक लाइट बॉल भी है।

टेबल में फ्लावर पैकेट दिखाई दे रहा है।

जो ब्लैक कलर का है।

जो ब्लू कलर का है।

और एक मोटर भी दिखाई दे रहा है।

यहां में एक अन्य दिखाई दे रहा है।

यहां में दो गाड़ी दिखाई दे रहा हैं।

और भगवान का फोटो भी माला लगा के दिखाई दे रहा है।

साइड में लोहा से बना हुआ बाउंड्री लगा के है।

और उसने व्हाइट कलर का कपड़ा पहना हुआ है।

ये एक रूम का अंदर है।

और चर्च का बाहर में आदमी लोग भी दिखाई दे रहा है।

इसमें बहोत सारा सामान रखे हैं।

बहुत सारा बाइक भी दिखाई दे रहा है।

ये रूम का कलर है वाइट कलर से पेंट किया हुआ है।

एक स्ट्रीट लाइट भी दिखाई दे रहा है।